इसमें पत्थर का एक पोल बना हुआ है इसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

क्योंकि हरे कलर का हो रखा है इसमें एक बोर्ड पर जयपुर कुकिंग लिखा हुआ है।

इनका रंग हरे कलर का है इसमें एक पोल भी लगा हुआ है।

इसमें एक डंडा है उस डंडे के पास--

इसमे एक एक मैडम है इसमें कुछ पेड़ पौधे भी बने हुए हैं।

जिस पर एक किताब रखी हुई है जिसमें कुछ बोर्ड है।

जिनका रंग अलग अलग कलर का है।

जो कि काले कलर की है इसमें एक एल_इ_डी व स्पीकर भी लगे हुए हैं।

कुछ व्यक्ति उस मंदिर मे जा रहे है जो कि एक मंदिर है।